यूजर लोगिन ट्यूटोरियल के तीसरे भाग में आपका स्वागत है
यहाँ हम सेशन बनायेंगे जिसमें यूजर पेज एंटर कर सकता है
तथा वे जब तक लॉगिन हैं तब तक वे पेज पर कार्य कर सकते हैं
किसी भी सेशन को शुरू करने के लिए हमें एक फंक्शन की आवश्यकता होगी जो है स्टार्ट सेशन
यह स्टार्ट सेशन है या सेशन start
इसे तुरंत जाँचें
सही एक एरर160
अतः यह सेशन स्टार्ट होना चाहिए
माफ कीजिए मैं यहाँ थोड़ा उलझन में था
सेशन स्टार्ट अच्छा
अतः रिफ्रेश करें रिसेंड करें और यह दिखायेगा यूरे in
हमने सेशन शुरू कर दिया है और यह एक सेशन वेरिएबल जोड़ देता है
अतः यूरे in इसके बाद मैं लिखूँगा क्लिक हेरे टो enter थे सीक्रेट नहीं थे मेंबर पेज
अच्छा
और यह मेंबर डॉट पह्प नामक पेज के लिए लिंक बन जाता है
संक्षेप में यदि हम सही डेटा भेजते हैं हम लिखने जा रहे हैं क्लिक हेरे टो enter थे मेंबर पेज जिसे हमने अभी तक नहीं बनाया
मैं यहाँ आपको याद दिलाता हूँ कि हमने यहाँ अपना सेशन स्टार्ट बनाया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है
हम सेशन बनाने जा रहे हैं और यह करने के लिए मैं शुरू करता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ थे डॉलर चिन्ह अंडरस्कोर सेशन और फिर कोष्ठकों में स्क्वेर कोष्ठकों में हम इसे सेशन नेम दे देंगे
मैं इसे यूजरनेम कहूँगा और वह हमारे यूजरनेम के समान होगा
मेरे ख्याल से मैं लिखूँगा डब्यूजरनेम क्योंकि वह डेटाबेस से सीधी वेल्यू है
हमारे पास अपना सेशन सेट है
जब तक यूजर खुद के ब्राउजर में है न कि जो ब्राउजर हम उन्हें देते हैं फिर जब हम किसी भी पेज में अपना सेशन एको करते हैं यह सेशन के रूप में सेट होगा
इसको प्रमाणित करने के लिए मैं एक नया पेज बनाऊँगा
यह मेंबर डॉट पह्प पेज होगा
अतः मैं इसे मेंबर डॉट पह्प के रूप में सेव करूँगा
यहाँ मैं लिखूँगा एचो और मैं यूजरनेम सेशन एको करूँगा
वास्तव में मैं शुरूआत में वेलकम और अंत में इसको अधिक सूचक बनाने के लिए एक विस्मयादिबोधक चिह्न जोड़ता हूँ
जब तक हम लॉगिन हैं यह इस कमांड को यहाँ रन करना चाहिए हमारे द्वारा बनाये गए किसी भी अन्य पेज पर अपने यूजरनेम के लिए अपने ब्राउजर में अपने सेशन को सेट करके
यदि यहाँ पर कोई अन्य पेज है और आप सेट करने के लिए इस कोड का उपयोग करते हैं यह कार्य करेगा
आपको जरूर यहाँ इस फंक्शन की आवश्यकता होगी
अतः आपको प्रत्येक पेज में सेशन स्टार्ट की आवश्यकता है जिसे आपने सेशन में बनाया या घोषित किया है
यहाँ हम रिस्टार्ट करते हैं मुख्य पेज पर वापस चलते हैं
मैं एलेक्स और एबीसी के साथ लॉगिन करूँगा लॉग इन क्लिक करें
मेम्बर पेज में एंटर करने के लिए यहाँ क्लिक करें
अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कोई एरर नहीं है
मैंने मेरा सेशन सफलतापूर्वक बना दिया है
यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ हमें Welcome
मिलता है हमें केवल वही मिला
देखते हैं क्या हुआ
वापस चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या गलत किया
यह यूजरनेम होना चाहिए
मैं यहाँ कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैंने यहाँ डबल इक्वल टू चिन्ह डाला
जो कि गलत हो सकता है
अब यह कार्य करना चाहिए
अपने इंडेक्स पेज पर वापस जाते हैं और फिर से लॉगिन करते हैं
जैसा हमने पहले किया
लॉगिन ओके यह दिखायेगा यूरे in
मेम्बर पेज में एंटर के लिए यहाँ क्लिक करें
यहाँ क्लिक करें और यह दिखायेगा वेलकम alex अब मैं वापस लॉगिन पेज पर जाऊँगा
अधिकतर लोग सोचेंगे कि सभी डेट खो गया है
यदि मैं वापस मेम्बर पेज पर जाता हूँ जोकि मेंबर डॉट पह्प है और एंटर प्रेस करता हूँ यह अभी भी एलेक्स दिखाता है
और यदि कुछ सेकंड के बाद मैं अपना ब्राउजर बंद करता हूँ और इसे फिर खोलता हूँ और मैं लोकल होस्ट पह्प एकेडमी पर जाता हूँ फिर मेरे पेज पर वापस आता हूँ जोकि लोगिन सेशन है और वापस मेरे मेम्बर पेज पर आता हूँ तो मैं अभी भी लॉग इन हूँ
अतः मेरा यूजर लॉग इन है
यदि मैं ब्राउजर बंद करता हूँ मैं अभी भी लॉग इन हूँ जब मैं वापस एंटर करता हूँ
यह बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है यदि आप इस प्रकार से लॉग इन कर रहे हैं
अधिकतर बेवसाइट्स आपको लॉग इन रखने के लिए ऐसा करती हैं
लेकिन अब मैं लॉगआउट पेज बनाना चाहता हूँ
लॉगआउट करने के लिए हमें एक अलग पेज बनाने की आवश्यकता है और इसे लॉगआउट डॉट पह्प के रूप में सेव करें
और हमें यहाँ अपना सेशन समाप्त करने की आवश्यकता है
सबसे पहले अपने सेशन को समाप्त करने से पहले हमें इसे शुरू करने की आवश्यकता है
अतः मैं यहाँ सेशन स्टार्ट टाइप करूँगा
मैं एक बार इसे निश्चित कर लेता हूँ
अच्छा और फिर हमें सेशन डेस्ट्रॉय लिखने की आवश्यकता है
माफ कीजिए सेस्ट्रॉय नहीं डेस्ट्रॉय
यदि इस पेज को हम यहाँ रन करते हैं यह हमारे सेशन को समाप्त कर देगा
यहाँ मैं एक अनुकूल एरर मेसेज यूवे बीन लॉग्ड आउट
क्लिक हेरे टो रिटर्न टाइप कर सकता हूँ
चलिए मैं वापस अपने इंडेक्स डॉट पह्प पेज पर एक लिंक बनाता हूँ
अब मैं इसे फिर से जाँचूँगा
उदाहरणस्वरूप यहाँ एक ब्रेक डालें
यहाँ मैं लॉगआउट के लिए एक लिंक बनाऊँगा
यूजर को अपने लॉगआउट डॉट पह्प पेज पर लिंक देना महत्वपूर्ण है
अन्यथा वे नहीं जान पायेंगे कि लॉगआउट कैसे करें
हम इसे रिफ्रेश करते हैं और यह पह्प पेज से लॉगआउट होने के लिए लॉगआउट लिंक बनायेगा
इस पर क्लिक करें और आपको यूवे बीन लॉग्ड आउट
क्लिक हेरे टो रिटर्न
मुझे लगता है कि हम लॉगआउट हो गये हैं
अपने मेंबर पेज डॉट पह्प पर वापस जाने की कोशिश करें
हमें यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं मिला
अब आप नहीं चाहते हैं कि इस पेज पर यूजर ऐक्सेस करें क्योंकि वे अब लॉग इन नहीं हैं
अतः यहाँ मैं लिखूँगा सेशन स्टार्ट फिर मैं लिखूँगा इफ सेशन और सेशन नेम जो कि यूजरनेम है
आगे मैं वेलकम लिखकर अपना डेटा एको करूँगा
एल्से मैं लिखूँगा डाइ
मैं अपने पेज को समाप्त करना चाहता हूँ
तो मैं लिखूँगा यू मस्ट बीई लॉग्ड इन
हम मान रहे हैं कि यदि यह सेशन मौजूद है या यदि यह सही यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके बनाया गया है
हम अपने वेलकम नामक अनुकूल मेसेज को एको कर सकते हैं
अन्यथा पेज समाप्त कर सकते हैं और लिख सकते हैं यू मस्ट बीई लॉग्ड in अतः यह सब ट्यूटोरियल के इस भाग में है
मैं आपके लिए इसे संक्षेप में बताता हूँ
याद रखिये मैं लॉग इन नहीं हूँ
तो मैं लॉगिन करता हूँ
मैं लॉगिन हूँ
यहाँ मेरा मेम्बर पेज है
मैं लॉगआउट कर सकता हूँ
मैं यहाँ वापस आता हूँ
अब जैसा कि हमने मेंबर डॉट पह्प बनाया दिया है एंटर प्रेस करें
यह दिखाता है यू मस्ट बीई लॉग्ड in अतः उदाहरणस्वरूप मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ लेकिन मैं इसके लिए यहाँ क्लिक नहीं करूँगा
मैं अपने आपको मेंबर डॉट पह्प पर फारवर्ड करूँगा
मेसेज बन गया है और मुझे ऐक्सेस की अनुमति दी गई है
अच्छा तो अभी के लिए इतना ही
यह इस ट्यूटोरियल का आखिरी भाग है
यदि आपके पास कोई प्रश्न है मुझे मदद करने में खुशी होगी